एक गाय दिख रही है दो लोग दिख रहे है इट कि दिवार दिख रही है गेट दिख रहा है।

बिल्डिंग दिख रही है दीवाल दिख रही है लाल दिख रहा है।

सिडीया दिख रही है रेलिंग दिख रही है लोहे के पाईप दिख रहे है नीचे ग्राउंड दिख रहा है।

खंबे दिख रहे है आसमान दिख रहा है तितलियाँ दिख रही है दिख रहे है छोटे-छोटे पेड़े भी दिख रहे है नीचे पार्किंग दिख रही है कुछ लोग स्विम्मिंग पूल में दिख रहे है।

कुछ सिंगर्स संगीत सीख रहे है एक खड़ा है तीन चार लोग बैठे है कुछ लोग गिटार पकड़े है।

कार दिख रही है मोटर साइकिल दिख रही है बिल्डिंग दिख रही है पेड़ दिख रहे है और आसमान दिख रहा है ऊँची दिख रही है काँच दिख रहा--